फैशन सोल लिखा हुआ है।

ब्राउन कलर का दीवाल है ग्रे कलर का है और आसमानी कलर --

एक लड़का जा रहा है। पीला कलर का शर्ट पहना है निचे आसमानी कलर का जीन्स पहना है।

पीछे पंग अ ऊपर पंखा लगा हुआ है सफ़ेद कलर का तीनो आदमी --

गाड़ी ग्रे कलर का है पीछे झाड़ है हरा-हरा |

धुँधला-धुँधला मौसम हुआ है ग्रे कलर का |

उसमे से पानी फेक रहा है। पानी डिज़ाइन किया है। बाइक खड़ी है। झाड़ बोहोत लगे हुए है रंग बिरंगा

लड़के बच्चे नहीं दिख रहे हैं ।